ये बना हुआ है घेरा बना हुआ है जिसमें एक सीडी नज़र आरा होगा।

एक टी-शर्ट पन-पहन के आदमी जा रहा है एक टैंपो ने टैंपो में दो तीन आदमी है।

आपको बहुत सारे एक रिक्शा जा रहा है एक आदमी खड़ा हो के फोन चला रहा है दो रिक्शा जा रही हैं एक साईकिल जा रही है जिसमें से साईकिल में बैठे हुए ब्लू रंग का जैकेट पहना हुआ है जो रिक्सा चला रहा है उसने लाल रंग का स्वेटर पहना हुआ है।

ये एक होटल है जो ग्रीन रंग का बहुत सारे घेरा में बना हुआ है ग्रीन रंग का यहां पे सीडी भी है दो तल्लब --

ये एक पेट्रोल पंप है एक पेट्रोल का ई मशीन रखा हुआ है एक काला कलर का सुजुकी क कार है।

टी-शर्ट पहना हुआ है नीचे ब्लैक कलर का पैंट पहना हुआ है जस्ट लेफ्ट साइड में बाबा बैठे भिखारी जी बैठे हुए हैं।

बहोत सरे छोटे-छोटे डमरू रखे हुए हैं बहोत सारे सर्टिफिकेट भी हैं सामने एक पेटीएम का बारकोड नज़र आ रहा है पेटीएम लिख हुआ जिसमें एक पंखा हैं।